बड़े-बड़े पेन के डिब्बे देखे जा सकते है जिनमे कुछ अलग-अलग कलर के पेन्स लगे देखे जा सकते है पीछे दो लोग खड़े देखे जा सकते है जो बाते कर रहे है।